यह बहोत सुंदर है घोड़े की सवारी अत्यंत प्यारी होती है।

ये काफी सुंदर खेत है चारों तरफ हरियाली है और बहोत सुंदर--

और यहां आदर्श स्कूल का बोर्ड लगा है यह एक पब्लिक स्कूल है।

और बाहर एक पेड़ है काफी बड़ा पीपल का पेड़ है।

ये सभी गाड़ी सर्विस के लिए और ठीक करने के लिए खड़ी की गई है।

एक आदमी एक छोटे से पुल पर खड़ा है।

इसमें बहोत सारी मशीने हैं और फिटनेस का समान है।

यहां बड़ी बड़ी लाइटें जली हैं और बहुत सारे ए_सी लगे हुए हैं।

यहां बीच में बड़े बड़े फूलों के पेड़ हैं।

ये बहुत ही खूबसूरत सिटी है यहां का रोड बिल्कुल साफ है बिल्कुल क्लीन है और यहां बहुत --

ये बहोत बड़ी दुकान है इसमे काफी सारी लाइटे भी चसी हुई है।

डॉक्टर ने जींस टॉप पहना है और एक महिला डॉक्टर है उसके पास उसका काले रंग का बैग भी रखा है और काफी सुंदर कमरा है।

और पीछे टूटे फूटे चीजें रखी हैं और एक आदमी भी खड़ा है।

एक लड़का कोट पैंट पहन कर खड़ा है यह अपना फोटो शूट करवा रहा है।